सामने की ओर हरे रंग का बेंच है और बाकी बेंच लकड़ी की है। पीछे की तरफ खिड़की है और दाहिने साईड व्हाइट बोर्ड है।

यह तस्वीर एक छोटे से बच्चे की है जोकि फूलों के बगान के बीच खड़ा हुआ है।

और एक व्यक्ति सामने ब्लू कलर का हाफ टी शर्ट पहने हुए पेट्रोल डालने के लिए खड़ा है।

और बक्से में बड़े-बड़े और छोटे-छोटे कपड़े भी रखी हुई हैं जो कि बिल्कुल नया है।